बाजू में ये एक जने हेयर कट भी बना रहा हैं और बच्चा सामने कुर्सी बैठा हुआ--

घास के ऊपर एक बच्चा दिख रहा है जोकि एक डंडी उठाया हुआ--

शायद बाजू में पेट्रोल पंप दिख रहा है और पेट्रोल पंप के इधर साइड में बाइक भी दिख रही है ठहरी हुई।

एक छोटी सी किरण दुकान लग रही है जहां पर बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं जैसे तेल का डब्बा और गोला--

और ये ये फोटो बाहर से ली गई है बहुत अच्छा बड़ासा पेट्रोल पंप दिख रहा है।

किसी सोसाइट सोसाइटी की फोटो लग रही है जहां पर आजूबाजू घर लग रहा है घर दिख रहे हैं और बीच में खंबा भी दिख रहा--

लिख रहा है जहां पर जिस पर जिस पर चेक-अप किया जाता है जिसको जिसको बीमारी होती है उन लोगों को चेक अप किया जाता है यहां पर तीन लोगों को चेक अप कर रहे हैं।

और बाहर पुलिस भी ठहरी हुई और पुलिस की गाड़ी भी आ चुकी है और सामने एक व्हाइट कार दिख रही है।

आदमी का हाथ भी दिख रहा है जो बैठा हुआ है .

लोअर की छोटी सी दुकान दिखती है जहां पर दो आदमिया बैठे हुए हैं बैठकर स--

इस ओर में लाइटिंग भी चालू है और इस ओर में कोई नहीं दिख रहा--

सजाया गया है और कुछ टेबल्स रखे हुए है.

और बाजू में कुछ कारा भी ठहरे हुए हैं और बाजू में एक दुकान दिख रहा है।

हुआ है वो लड़की बैठी हुई है पत्थर पर पैर--

सर्विस कर रहे हैं और बाइक भी पर लगी हुई है और बहुत सारे बैग दिख रहे हैं इस कारखाने में।

यहां पर किसी का फंक्शन लग रहा है जहां पर बहोत सारे लोग आकर बैठ गए है कुर्सी पर और एक लेडिस जा रही है।

इलेक्ट्रिकल हॉब की दुकान दिख रही है जहां पर बहुत सारे एक्टिवा ठेरे हुए हैं बाहर और बाजू में घर भी दिख रहा है.